यहा एक किराने की दुकान दिख रही हैं इस दुकान मे कुछ अंडे वगेरा के ट्रे भी रखे हैं और कुरकुरे के पैकेट वगेरा भी रखे हैं।

इस शॉप मे बहोत सारे पैकेटस और बोटले वगेरह भी रखी हुई हैं।

हाँ यहां एक योगा अ ग्राउंड दिख रहा हैं जहां पर बहुत सारे लड़के और लड़कियां योगा कर रहे है।

यह एक स्पोर्ट शॉप दिख रही हैंजहा पे कुछ बेडमिंटन भी रखे हुए हैं यहा पे कुछ बोल वगेरह भी रखी हैं बड़ी बड़ी और कुछ छोटी छोटी भी हैं।